और इस घर के अंदर कलरफुल पर्दे डाल रखे हैं और घर में ए_सी भी लगी हुई है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस के अंदर चे ब्लैक कलर की चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है और वो सामने कंप्यूटर चला रहा है कंप्यूटर टेबल पर रखा हुआ है टेबल --

यह एक सड़क का चित्र दिखाई दे रहा है और सड़क पर वाहन चल रहे हैं।

और इसमें हरी हरी घास भी नजर आ रही है।

और इस पानी के ऊपर एक लोहे की एंगल बनी हुई हैं।